जैसा दिखाई दे रहा है इसमें।

यहाँ पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं लेडीज कपड़े हैं कुर्ती वैगरह टंगे हुआ है साड़ी में रेड कलर का।

और यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ कुछ बाइक दिखाई दे रहे है जो उजर है बहुत सारी विंडोस दिखाई दे रहा है यहाँ पे।

ऊपर में और यहाँ पे मंदील दिखाई दे रहा है और आसमान में दिखाई दे रहा है ऊपर वाइट और ब्लू कलर में।

ये जिम साउथ जैसा दिख रहा है सामने में ब्लू कलर है।

और उसे साइड में भी एक रोड दिखाई दे रहा है उधर एक बाइक --

और यहाँ पे सामने में कुछ गणेश भगवान की फोटो जैसा दिखाई दे रहा है यह मंदिर है शायद बड़ा सा।

ब्लू कलर में और वाइट कलर से लिखा हुआ है न्यू तार तेज हेयर सैलून लिखा है।

बहोत सारे ग्लास रखे हुए हैं बहुत सारे हैं |

और ये लम्बे -लम्बे बड़े-बड़े पेड़-पौधे है और सामने में यहाँ पे आसमान भी --

यहां सामने में कुछ खाली जगह दिख रहा है बीच में कुछ --

छोटा-छोटा उसमें ग्रीन ग्रीन ऐसे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

वाइट कलर के दिख रही है और एक भी वाइट की जिसमें ट्रेवल्स लिखा हुआ है।